सड़क के किनारे हरा भरा खेत है खेत के बीच में कहीं-कहीं पे पेड़ हैं बीच में एक झोपड़ी बनी हुई है।

सफेद रंग की टेबल के ऊपर वी_केयर लिखा हुआ है सामने दीवार में भगवान की फोटो बीच में घड़ी लगी है।

सामने एक ढाबा है जिसके बहार आंगन लिखा हुआ है ढाबे के बाहर गाड़िया खड़ी हुई हैं।

नदी है नदी के बीच में पेड़ पेड़ पौधे और झाड़ियां है।

ऊपर के लिए सीढ़ियां जा रही हैं सामने एक खंभा है दीवाल पे कुछ--

पेड़ के तनों को लगाया गया है बाहर कुछ महिलाएं नीचे जमीन में बैठ के बात कर रही हैं।

गाड़ियों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं।

बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी स्कूटर और बाइक खड़ी हैं बाहर दो लोग बैठे हुए हैं।

पेट्रोल पंप के दूसरी तरफ एक कार और एक बाइक खड़ी है थोड़ी ही दूर पेट्रोल का टैंकर खड़ा है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग है बिल्डिंग की बाउंड्री के बाहर मॉडर्न स्कूल का बोर्ड लगा है।

सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है बिल्डिंग के सामने रंग बिरंगी झंडे लगे हुए हैं।

दीवाल के ऊपर कुछ पेंटिंग टंगी है एक भगत सिंह की तस्वीर है घड़ी टंगी है।

सामने की दीवार में अलमारी रखी हुई हैं अलमारी के अंदर किताबें हैं।

दरवाजों के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनी है।

पीछे कुर्सी लगी हुई है जिसके ऊपर लाल सफेद कपड़ा बिछा है।

कुछ आदमी पतीलों में कुछ पका रहे हैं सामने एक बड़ी सी टेबल है टेबल के ऊपर कुछ सामान रखा है।